यह एक फिल्म थियटर है जहाँ पे बहुत सारी सीटें लगी हुई हैं। एक आदमी बैठा हुआ है। जो --

और फैन है। ये कोई स्टेज शो का सीन लगता है। नो --